पे कुछ रोड दिख रहा है जहाँ पर ब्रिज नज़र आ रहा है पेड़ नज़र आ रहे है हरे-हरे सन सीन दिखाई दे रही है कुछ लोग वहाँ खड़े है बाइक नज़र आ रही है और वहाँ पर एक टेम्पो नज़र आ रहा है।